बिल्डिंग के नीचे एक गेट है ।

दो घड़ी लगे हुए हैं ।

झरना में लाइट लगा हुआ है।

इधर पिलर हैं जिसमें स्लिपवेल लिखा हुआ हैं।

लैपटॉप के पास एक कुर्सी है जो काला और लाल रंग से रंगा हुआ है।

इसके ऊपर खिड़कियां बहुत सारी दिख रही है।

बस के पीछे में एक और बस है लाल कलर का बस।

लड़की हाथ से घूंघट को उठाई हुई है।

इसके बगल में ही एक और ढाबा है।

एक आदमी छत्री लिए हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक होटल है जिसमें बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए आए हैं।

एक कुर्सी है टेबुल है बेड व्हाइट कलर का है।

एक आदमी है जो पौधे में पौधे देख रहे हैं।

बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है।

वह कुछ मूवी दिख रहा है तिरंगा झंडा है।

यह तस्वीर एक पार्टी ग्राउंड का है जिसमें रंग बिरंगी लाइट लगी हुई है।

यह एक होल सेलर है जिसमें तीन कलर का टेबल रखा हुआ है।

यह एक जिम है जिसमें बहोत सारे लोग है जिम कर रहे हैं।

तीन लोग हैं जो उठक बैठक कर रहे हैं।